पर मुझे बहुत सारे सोफा भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे डेकोरेट की चीजें भी रखी हुई है।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

पर मुझे एक ट्रेन भी दिख रही है जिसके ऊपर से मुझे बहुत बड़ी सी एक पुल भी दिख रही है।

पर मुझे एक बहोत बड़ा एरिया दिख रहा है जहां पर मुझे बहोत सारे से गमले भी दिख रहे हैं जहां पर मुझे बहोत सारे फ्लावर्स भी दिख--

और मुझे बहुत सारे सोफे में बड़े-बड़े सोफा और मुझे देख रहे हैं यहां पर मुझे बहुत सारे टेबल में।

मुझे बहुत सारी स्कूटी भी दिख रही है।

पर मुझे बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं जो इधर-उधर जाए--

पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है जहां पर मुझे बहुत सारी बड़ी-बड़ी शॉप्स भी दिख रही है यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा गेट भी दिख रहा है यहाँ पर मुझे बहुत बड़े-बड़े से पेड़ भी देख रहे हैं।

भरे है यहाँ पर मुझे बहुत सारी बाइक्स और स्कूटीज भी दिख रही है और यहाँ पर मुझे बहुत सारे छोटे-छोटे से पोस्टर्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है ।

पर मुझे छोटे छोटे से घर भी दिख रहे हैं जो कि बर्फ से ढके हुए है।

पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैयहाँ पर बहुत सारे बुक्स भी रखी हुई है वो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं।

औरयहाँ पर मुझे एक स्विच बोर्ड भी दिख रहा है।

पर मुझे बहुत सारी चर्च भी दिख रही हैऔर यहाँ पर मुझे बहुत बड़े-बड़े से पैट भी दिख रहे हैं।

पर मुझे बहुत सारे लाइट्स भी दिख रही है और यहाँ पर मुझे बहुत सारे कुछ डब्बे भी दिख रहे हैं और यहाँ पर मुझे बच्चों के खेलने की--

यहां पर मुझे एक और कोई नजर आ रहा है।

आरी भी लगी हुई है यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिख रहा हैजो कि हरा--

यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है जहां पर मुझे एक प्लास्टिक की थैली दिख रही है यहाँ पर मुझे--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

पर मुझे रेड कलर के बहोत सारे फ्लैग्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं यहां पर मुझे ब --